यहाँ पर एक तालाब में पानी बहुत सारा दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर बहुत सारे गाड़ी है और स्कूटी लूना अपाची बहुत सारॆ गाड़ी हैं।

यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े मूर्ति बनाई गई है और बहुत ही खुबसूरत दिख रहा हैं।

ए यहाँ पर माला वाला टांगे हुए है बहुत अच्छा दिख रहा है।

रोड बना हुआ है बहुत ही अच्छा दिख रहा है और रोड लाइन है पीछे गाड़ी -उड़ी हैं।

बोतल में पानी है और गिलास में पता नहीं का है चम्मच वमस है कटोरा में और पीछे का दिख रहा है।

और यहाँ पर दुकान है एक बहुत ही अच्छी दुकान है पता नहीं काहे का है बड़ा बिल्डिंग हैं।